लगता है यह टाटा का शोरूम है और यह बहुत बढ़िया है और यहां पर टाटा की सारी गाड़ियां खड़ी है |

कुछ कुछ लिख रखा है इन्होने और नीचे का फर्श भी बहुत साफ़ है। साफ़ सफाई बहुत है यहाँ पर।

कुछ स्कूल का एक ग्राउंड है ऐ ए क्रिकेट खेल रहे हैंक्रिकेट कोर्ट पे और वाइट कलर के कपड़े पहन रखे है और रंग-बिरंगे कपड़े भी पहन रखें हैं जो इधर बैठे हुये हैं कीप्रिंग कर रहा है।